रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का दृश्य जहां पे एक व्यक्ति अपना हाथ धोता हुआ नजर आ रहा है।

तथा कार के आटो पार्ट्स को सही करते हुए एक व्यक्ति पीछे टायर को साफ कर रहा है तथा दूसरा व्यक्ति एक कार के ओटो पार्ट्स को बदलते हुए --